यहाँ एक फंक्शन हो रहा है।

इस के गेट पर लाइटे लगी हुई है लोग इधर उधर जा रहे है और कुछ लोग बैठे हुए है।

यहाँ एक व्यक्ति नदी के बीच रखे पत्थर के ऊपर बैठा सामने की ओर देख रहा है नदी के किनारे पर एक बहुत बड़ा माउंटेन है।

यहाँ विभिन्न प्रकार की मालाएं है।

यहाँ एक नदी हैं जिस पर डैम बंधा हुआ हैं।

के एक हाथ में कड़ा तथा दूसरे में वॉच है पीछे खड़ा व्यक्ति इसको देख रहा है इसके अगल-बगल बहुत सारे सामान रखें हुए है।